यह एक अभ्यारण्य है इस अभ्यारण्य मे कुछ हिरण विचरण कर रहे है यहां पर कुछ जंगली झड़िया भी लगी हुई है।

यहाँ पर कुछ लोग बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ लोग उन्हे देख रहे हैं।

इस मैदान के एक और बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां पर साथ ही एक हाईटेंशन की लाइन भी जा रही है।

यहाँ पर दो आदमी खड़े है जिनमे से एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है यहाँ पर दिवार पर एक मॉडल का फोटो भी लगाया हुआ है।